जहां पर बलून का डेकोरेशन भी नजर आ रहा है।

बैंक लगा हुआ है और कुछ बाइक भी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में यहां पर रोड के किनारे एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक लड़का काम करता दिखाई दे रहा है सामने गली में --

इस इमेज में यहां पे देखिएगा पार्क दिखाई दे रहा हैं बीच में मैदान भी बना हुआ हैं।

यहां पर ऊपर खूबसूरत लाइटे भी जलती नजर आ रही हैं।

और सामने लैपटॉप भी दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक क्लासरूम दिखाई दे रहा है जहां पर बैठने की बेंचेज लगी हुई हैं।

इस इमेज में यहां पर एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा हैं जहां पर टेबल कुर्सी लगे हुए हैं।

सामने एक काउंटर भी नजर आ रहा है और कांच का बड़ा सा गेट भी दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक डॉक्टर नजर आ रहे हैं और कई सारे पेशेंट खड़े दिखाई दे रहे हैं।

सामने यहां पर एक मॉल दिखाई दे रहा है जहां पर कई सारी दुकाने नजर आ रही हैं।

इस इमेज में यहां पर एक ट्रक खड़ा दिखाई दे रहा है।

कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं और नकली डायनासोर की मूर्ति भी दिखाई दे रही है।